यहाँ पे तरह तरह की मिठाइयाँ रखी हुई हैं सबसे ऊपर में कुछ नमकीन है उसके नीचे लड्डू--

जिसमें एक छोटी सी गेट बनाई गई है।

आसपास हरियाली ही हरियाली ऊपर आसमान नीचे हरी हरी घास --

यहाँ एक क्रिकेट का सेटअप बनाया गया है यहाँ सामने में हमें पिच दिख रहे हैं।

और कुछ वाइट वाइट पाउडर से क्रिकेट के--

और इसके चारों तरफ शीशा ही शीशा है।

यहाँ एक सीमेंट के पत्थरों के बने हुए--

पिंक एंड वाइट का थीम मस्त लग रहे हैं बगल में दो बड़े बड़े कुछ पेड़ हैं।

और ऊपर कुछ जेब्रा क्रासिंग के डिजाइन के ऊपर लटके हुए है।

जिस के काम मिट्टी उठाने में आते हैं और फिर उसके ऊपर एक छत है।

जिस के लिए बड़ा सा बनाया गया है बहोत सारी लाइट्स लगाए है।

और पंडाल भी बना हुआ है जहाँ लोग बैठ के सुनेंगे देखेंगे--

यहाँ पर बांस के काम कर रहे है अभी बांस को जोड़ रहे है।

पीछे बहोत सारे पेड़ भी दिख रहे है।

देख कर समझ आ रहा है कि भारत माता के ऊपर नाटक है।

उसके बड़े बड़े पत्ते दिखाई दे रहे है।

वो हैंडल करते है कि कितना--

जो हम खाते हैं डेली यूज़ में--

फोटो है जहां पर आपको दिख रहा होगा कि बहोत से टूल हैं।

एक्सरसाइज करते हैं जिससे हमारा स्ट्रेंथ बढ़ता है।

पोक कर रहे हैं स्टेडियम भी है।

यहाँ तक आने की सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं चारों तरफ रूम्स भी दिख रहे हैं घर जैसे--

यहाँ सामने स्कूल के प्रे प्रेयर हो रही है।

यह एक बुटीक है या फिर कोई शोरूम यहाँ पे दुल्हन के कपड़े मिलते हैं।

वो देख के लग रहा है कोई गिफ्ट शॉप है।

बहोत सारी गाड़ियां हैं प्लास्टिक की बच्चो के लिए।

कोई जिम नहीं है बट यहाँ पे जिम में यूज़ होने वाले बहुत सारे चीज़ें हैं।

जो लोग जिम जाते हैं वो यहाँ बैठके भी एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने स्ट्रेंथ के लिए--

जिस को कितने ही सुन्दर तरीके से सजाया गया है।

ठंडे के दिनों में धूप में बैठ सकते हैं बीच में पौधा भी है बड़े बड़े पेड़ भी हैं साइड में --

छोटी गाड़ियों से लेके बड़े बड़े ट्रक ट्रैक्टर्स के लिए।

यहाँ पर गाड़ी के लिए हवा भरने वाले पाइप्स भी--

कोने का फोटो है यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे लाइट्स हैं स्टीच हैं।

यहाँ की यहाँ पर मिट्टियो की बनी हुई मुर्तिया।

बड़े बड़े पेड़ हरियाली ही हरियाली है यहाँ पे --

यहाँ पे होम्योपैथी दवाइस मिलती हैं क्योंकि हर किसी को--